यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है नदी मे नाव दिखाई दे रही है नाव का कलर हरा है नाव मे दो लोग साथ आ रहे है पीछे कुछ पत्थर दिखाई रहे है।

एक आदमी रोड क्रॉस नजर आ रहा है। यहां पर कुछ पैड नजर आ रहा है। सामने एक ब्रिज नजर आ रहा है। ब्रिज काफी बड़ा है।